मछली की दुकान है टब में मछली रखी है बहोत सारे मास्क लगा कर ले रहे हैं और यहाँ पर बड़े से आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा सा बस स्टॉप बस खड़ी हुई हैं और यहाँ पर सस्कूटरस बाइकस साइकिल भी स्कूटी भी दिखाई दे रही हैं।

यहां मार्केट है मछलियां बिक रही हैं मास्क लगाकर बैच रहे है सब।

वहाँ पर रोड भी दिखाई दे रहा है।